एक बड़ी-सी खिलौना का दुकान है और बोहोत सारे खिलौना भी हैं।

ऐसी तस्वीर में हम देख सकते हैं।

एक बड़ी सी चेयर बगीचे के अंदर रखे हुए हैं और सुबह हो गई।

यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बड़ी सी --